करके बॉक्स के रूप में ऊपर एक सफेद कलर का पंखा चल रहा है बीच में बहुत सारे स्टैंड्स हैं जिसमें हैंगर मैं लगाकर--

यहां पर एक के सामने बिल्डिंग बनी है जो एक--